ये एक मेला लगा हुआ है ग्राउंड में और आस-पास में हरियाली है खेत ही खेत है ।

--एंड इसमें ब्लू चेक्स पहने-- और यहां पर तीन चेयरें लगी हुई है रेड कलर की इमरजेंसी क्लॉक है।

ये एक मंदिर है मंदिर में ये पिंक एंड यल्लो कलर से पुता हुआ है और आसपास में इसमें बहुत सारे आसपास पेड़ पोधे हैं।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

ये कैंप लगा हुआ है यहां पे लेडी है एक डॉक्टर बैठे हुए हैं चेयर पे।